पर ये तीन लोग आपको खाते हुए पराठा नजर आ रहे होंगे।

दिखने में ही पता चल रहा है कि कितना टेस्टी हो --

तो जैसा कि आप इस तस्वीर को देख रहे हो इस तस्वीर में आपको खुली जगह पर --

जैसा कि दोस्तों आप इस तस्वीर को देख रहे हो इस तस्वीर में आपको दिखेगा है कि दूल्हा-दुल्हन --

टेज पर है और अगल-बगल नादाने कई सारे लोग वहाँ पर --

सात कन्याएं बैठी हुई नजर आ रही होगी।

रेड चीफ नाम का बोर्ड नजर आ रहा है यानी यहाँ पर सारे लाल कपड़े मिलते हैं। चीफ यानि यहाँ पर --

बताई सकते हो की यहाँ पर गड्ढे कीये गए है। गड्ढे यानि की यहाँ पर इ --

जैसा कि दोस्तों आप इस तस्वीर को देख रहे हैं। इस तस्वीर को तो देखके आप समझ गए होंगे --

जो अपनी यात्रा बसों से कर रहे हैं और कुछ एक बस खाली खड़ी है।

इस तस्वीर पे मेनू कार्ड लगे हुए मेनू कार्ड देखकर आप समझ ही गए होंगे।

मेनू कार्ड पढे और अपनी मनपसंद चीज जो चाहिए वह ले जाए।

बिल्डिंग की इमारतों को लाल और सफ़ेद रंग से जो डिज़ाइन दिया गया है उस डिज़ाइन की तो बात ही क्या करनी इतना मस्त लग रहा है।

अपने मनपसंद हिसाब से अपने बॉडी को हम आकर दे सकते है।

जहां पर ए.सी. लगा हुआ है। यह मॉल का दुकान है जहां पर इसका एक पार --

इस शॉप को दिखाया दे रहा है| जहाँ पर चॉकलेट किटकैट कुरकुरे सब डिमांडेड चीजें मिलती --

आसमानी झूला का तो क्या ही बात करना। आसमानी झूले में तो झूलने का मजा कुछ और ही होता है।

एक लड़का जिम मेंअपने तस्वीर खींचते हुए नजर आ रहा होगा। ये लड़का अपनी तस्वीर खिचवा रहा है।

गन बड़ी मूर्ति ऊपर जैसे कि गणपती नवरात्रि में बड़ी होते हैं। जिन --

तो जैसा कि आप इस तस्वीर को देख रहे हो इस तस्वीर को तो देख के आप समझ ही गए होंगे कि एक गांव का --

सड़क है और गांव की सड़क तो आपको पता ही होगा गांव की सड़क कैसी दिखती है।

और उस तरफ आपको एक कार नजर आ रही होगी। कार देखने में तो --

इस तस्वीर में आपको कच्ची इमारतो से बना हुआ कच्चा ये घर दिख रहा है।

जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हो इस तस्वीर को देखके आप --

हर एक प्रकार की सब्जियां भाजी फल फ्रूट और इत्यादि प्रकार के --

और उस पर एक पहाड़ी इलाका है और अगल-बगल थोड़े बोहोत घर घड़ मकान और छत है।

कुछ ऐसा की आप इस तस्वीर को देख रहे हो। इस तस्वीर में आपको खुले --

तो जैसा कि आप इस तस्वीर को देख रहे हो इस तस्वीर को तो देखकर कोई भी बता सकता है यह है दूल्हे की गाड़ी।